यहां पर गणेश जी मूर्ति दिख रही है जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहां गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है यहां बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं।

ये एक हॉस्पिटल है यहां पे बहुत से पेसेंट आते हैं दिखाने के लिए यहां पर बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई हैं बगल से एक होंडा की एजेंसी भी है।